यहाँ पर एक महिला खड़ी हुई है जिसका कोई ऑरेंज और ब्राउन येलो दिखाई दे रहा है इसका हैन्ड ब्लैक और पिंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत सी चीजे बहुत सारी चीजे रखी है जो कुछ पिंक ग्रीन और ऑरेंज दिखाई दे रही है यहाँ पे जो --

यहां पे झूले दिखाई दे रहे हैं। यहां पे एक गे पिंक कलर की दीवार दिखाई दे रही है।

सारी बोट्स हुई है जिन पे कलर पिंक रेड है ग्रीन है येलो है ऑरेंज है यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब रखे हुए है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं बहुत सारे ट टावर्स हैं।